बहुत सारा चीज रखा हुआ है। भी बहुत पसंद है।

दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आसमान भी दिख रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है।

यह नाई की दुकान है। नाई --

खतरे का समय है। बल्ब जल रहा है अँधेरा है। अभी सब बैठे हुए हैं।

एक पैकेट एक पैकेट है। नीम का बहुत बड़ा पेड़ है।